कुछ चार पहिया वाहन भी देखे जा सकते हैं।

आसमान में बहुत सारे बादल देखे जा सकते हैं।

इस तस्वीर में आप एक पुल को देख रहे हैं जिसके नीचे एक नदी बह रही है।